कपड़ो की दुकान दिखाई दे रही है जिसमे कलेक्शन का कलेक्शन लिखा हुआ है इसमें।

इस इमेज में हमलोगों को तरबूज़ दिखाई दे रही है यहाँ पर गोभी रखी हुई है केला रखा हुआ है।

यहाँ पर हमलोगो को बहुत सारी पेन कॉपी फेवी-क्विक --